पताल है इस अस्पताल में मुझे कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।

और एक कंच का गेट भी दिखाई दे रहा है।

घर भी दिखाई दे रहे है और लाइन भी दिखाई दे रही है।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

यह एक अस्पताल है इस अस्पताल में मुझे बाहर आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक काम चल रहा है।

तसले दिखाई दे रहे है और पानी के ड्रम भी दिखाई दे रहे है।

यह एक खेलने का मैदान है।

ये जगह में मुझे धान दिखाई दे रही है।

एक बोर्ड दिख रहा है ब्लैक कलर का।

और कॉस्मेटिक का भी समान है शैम्पू रखे हैं तेल रखे हैं।

मूर्ति भी दिखाई दे रही है और हरे कलर की चटाई बिछ रही है।

जिम है इस जिम में मुझे बहुत सारी मशीन दिखाई दे रही है।

साइकल बना रखी है डिजाइन से और तीन चिड़िया दिख रही है।

ट्रक खड़ा है और कार भी दिखाई दे रही है सिलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक डॉक्टर की दुकान है।

इस घर में मुझे बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

सॉफे दिखाई दे रहे हैं जिन पर तकिये रखे हैं।

टैंक भी दिखाई दे रहे हैं और लैट्रिन बाथरूम भी दिखाई दे रही है।

लाइट भी दिखाई दे रही है और समान भी दिखाई दे रहा है कुछ बाहर।

इस रूम में मुझे दो सोफे दिखाई दे रहे हैं।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

गेट भी दिखाई दे रहे हैं और एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

इस प्रोग्राम के बाहर मुझे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और एक सोफा भी दिखाई दे रहा है और मेज कुर्सी भी दिखाई दे रही है और पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं।